सामने एक रोड दिख रहा है रोड काफी बड़ा दिख रहा है और एक बिल्डिंग के सामने एक गेट दिख रहा है गेट ब्लैक कलर का दिख रहा है काफी बड़ा गेट दिख रहा है एक पोस्टर है जो ब्लू कलर का दिख रहा है।

बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग का जो पेंटिंग कलर है जो रेड और वाइट कलर का दिख रहा है और उसके ऊपर जो घंटी लगी हुई दिख रही है| एक बाजा लगा हुआ दिख रहा है और पर जो कुछ सीढ़ियाँ दिख रही हैं सीढ़ी के पास चप्पल रखी हुई दिख रही है।

उधर एक बाल्टी रखी हुई है बाल्टी रस्सी से बंधी हुई दिख रही है| यहाँ पर कुछ रखा हुआ दिख रहा है पास में| कुछ घास दिख रही हैं हरे कलर की| एक पर्सन खड़ा हुआ दिख रहा है जिसने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहन रखी है आसमान दिख रहा--

उसके अंदर काफी सारे कलर से सजाया हुआ दिख रहा है यहाँ पर एक सोफा रखा हुआ दिख रहा है अलग-अलग से फुल जैसे अलग अलग फूल दिख रहे है कुछ दिख रही --

दिख रही है| यहां पर एक सोफा रखा हुआ दिख रहा है काफी सारे यहां पर गमले रखे हुए दिख रहे हैं फ्लावर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं| कुछ पिंक कलर के दिख रहे हैं कुछ येल्लो कलर के फ्लोवर दिख रहे हैं और यहां पे जो भी सजाए गया है| जो स्टेज है उसके ऊपर जो फ्लोवर्स लगे हुए हैं वो भी अलग-अलग कलर के दिख रहे हैं।

घासें दिख रही है कुछ पानी के अंदर घासें दिख रही है जो हरे कलर की दिख रही है और पानी काफी गहरा है और काफी दूर तक फैला हुआ दिख रहा है आसमान दिख रहा है और यहां पर एक खंभा दिख रहा है खंभा लाइट का है ऊपर तार लगी हुई दिख रही।

सजा हुआ घर दिख रहा है और यहां पर काफी सारे पर्दे दिख रहे हैं कुछ येलो कलर के दिख रहे हैं कुछ पिंक कलर के दिख रहे हैं और कुछ रेड कलर के दिख रहे हैं लगे हुए यहां पर नीचे एक मैट बिछा हुआ दिख रहा है यहां पर एक चेयर रखी हुई दिख रही है चेयर ब्लैक कलर की दिख रही है।

दिख रहा है बिल्डिंग का पेंटिंग जो पिंक कलर से दिख रहा है कुछ लाइटें जलती हुई दिख रही है और अंदर कुछ दीवारों पर पोस्टर लगे हुए दिख रहे है कुछ व्हाइट कलर में लिखा हुआ दिख रहा है एक दीवार दिख रहा है जिसका पेंटिंग कलर ग्रीन कलर दिख रहा है कुछ लाइटें जलती हुई दिख रही है।

उसका पेंटिंग वाइट कलर से और कुछ पेड़ दिख रहे हैं और बड़े कुछ पेड़ छोटे दिख रहे और कुछ पत्थर दिख रहे हैं पानी दिख रहा है पानी के अंदर के अंदर काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं छोटे-छोटे और यहाँ पर कुछ कचरा रखा हुआ दिख रहा है सामने आसमान दिख रहा है ब्लू कलर का।

दिख रहा है पेशेंट बैठा हुआ दिख रहा है| यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है टेबल के आस-पास में कुछ चेयर रखी हुई दिख रही है| चेयर रेड कलर की दिख रही है| यहाँ पर एक म बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग का कलर वाइट कलर दिख रहा है| यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के हार दिख रहे हैं।

बिल्डिंगे दिख रही है बिल्डिंगे काफी बड़ी-बड़ी दिख रही है| बिल्डिंगो के अंदर कांच जड़े हुए दिख रहे हैं और वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है| यहां पर काफी सारे बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं सामने गार्डन दिख रहा है और काफी सारे बच्चे खेल रहे हैं।